गेट के बाहर एक लड़का खड़ा हे गेट गेट के बाहर कुछ गाड़िया भी खडी हे जिसमे एक कार और एक टू व्हीलर गाडी हे एक साइकिल भी खडी हुई हे।

मंदिर के आसपास कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं पीछे कुछ चट्टान भी रखी है।

इस चित्र में एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर फूलों और लाइटों से सजावट की गई है।

बाहर एक तालाब है तालाब के किनारे पर पहाड़ भी दिख रहा है।

जिसके डॉक्टर का नाम डॉक्टर पंकज सिंघानिया आऊर डॉक्टर प्रिय सिंघानिया है ईसमे एक महिला एक बच्चीको लेजाती हुई दिखाई दे रही ह।